ये भी एक ख़ारिज लग बन रहा है मकान जो इसमें भी चमचमाते तारे जैसे लग रहे है मुझे लगा और बन ही रहा है कम्पलीट हो गया है।

उसमे भी इतना अच्छा ही लग रहा है।